जावा में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे
पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाना
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
उबंटु वर्जन 1110 ओएस जावा डेवलपमेंट किट 16 और इक्लिप्स 370 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए
इक्लिप्स का उपयोग करके जावा में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएँ
httpwwwspoken tutorialओआरजी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है
कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर होता पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है
इसमें एक या एकसे अधिक पैरामीटर हो सकते हैं
अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएँ
अतः इक्लिप्स में मेरे पास studentजावा फाइल है
हमने पिछले ट्यूटोरियल में यह फाइल बनाई है
अब हम कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल्स को उनकी डिफॉल्ट वैल्यू देंगे
अतः roll number इस इक्वल टो ज़ेरो टेन के बजाय
और नामे इस इक्वल टो नुल रमन के बजाय
फिर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एएम आ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर

अतः हमने बिना पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर बनाया है
जावा में इस तरह के कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है
अब हम अन्य कंस्ट्रक्टर बनायेंगे
अतः टाइप करें स्टूडेंट पेरेंथीसेस
पैरेंथेसिस में इंट the roll number कॉमा स्ट्रिंग the name अतः हमने क्या किया है कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स के साथ घोषित किया है
कंस्ट्रक्टर का नाम स्टूडेंट जो क्लास का नाम है
पैरेंथेसिस में हमने कंस्ट्रक्टर के लिए दो पैरामीटर्स दिए हैं
हम कंस्ट्रक्टर के लिए कितने भी पैरामीटर्स दे सकते हैं
अब कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एएम आ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फिर roll number इस इक्वल टो the roll number और नामे इस इक्वल टो the name अतः हमने पैरीमीटर्स के साथ कंस्ट्रक्टर बनाया है
अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करें
अतः मेन मेथड में टाइप करें स्टूडेंट स्टू2 इक्वल टो न्यू स्टूडेंट पेरेंथीसेस में 11 कॉमा डबल कोट्स में राजू अब स्टुडेंटडेटेल मेथड को कॉल करें
अतः टाइप करें stu2स्टुडेंटडेटेल
प्रोग्राम को सेव और रन करें
हम कंसोल पर आउटपुट देखते हैं
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है
यह उनकी डिफॉल्ट वैल्यू के लिए वेरिएबल को इनिशीलाइज करता है
फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है
यह उन वैल्यूज के लिए वेरिएबल इनिशीलाइज करता है जो आर्ग्युमेंट के रूप में पास किये हैं
जो 11 और राजू है
अब देखते हैं कि पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है
जब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं हम इसमें दो वैल्यूज पास करते हैं
इन्हें आर्ग्युमेंट्स कहते हैं
वैल्यू 11 को पैरामीटर the roll number से कॉपी करते हैं
वैल्यू राजू को पैरामीटर the name से कॉपी करते हैं
फिर the roll number की वैल्यू roll number में निर्दिष्ट करते हैं
और the name की वैल्यू नामे में निर्दिष्ट करते हैं
इसलिए हम आउटपुट 11 और राजू देखते हैं
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करते समय सामान्य एरर्स देखें
मानिए कि हम कंस्ट्रक्टर के लिए एक सिंगल आर्ग्युमेंट्स पास करते हैं
अतः राजू को हटाएँ
हम एक एरर पाते हैं
यह बताता है कि थे कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट विथ पैरामीटर इस अनडिफाइंड
अतः आर्ग्युमेंट्स की संख्या पैरामीटर्स की संख्या से मिलनी चाहिए
यहाँ हम फिर से टाइप कर सकते हैं राजू और एरर ठीक हो जाती है
वैकल्पिक रूप से हम सिंगल पैरामीटर के साथ अन्य कंस्ट्रक्टर परिभाषित कर सकते हैं
इसे करें
अतः स्टूडेंट पैरेंथेसिस में इंट र नंबर
कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एएम आ कंस्ट्रक्टर विथ आ सिंगल पैरामीटर

फिर roll number इस इक्वल टो र नंबर फाइल को सेव करें
जब हम कंस्ट्रक्टर को परिभाषित करते हैं तो हम देखते हैं कि एरर हल हो गयी है
प्रोग्राम को रन करें
कंसोल पर हम देखते हैं कि रोल नंबर की वैल्यू 11 निर्दिष्ट है
जब नाम नुल है तब कंस्ट्रक्टर केवल एक आर्ग्युमेंट लेता है
अब अपने कंस्ट्रक्टर को दो पैरामीटर्स के साथ वापस कॉल करें
अतः टाइप करें स्टूडेंट स्टू3 इस इक्वल टो न्यू स्टूडेंट
11 कॉमा राजू फिर स्टू3 डॉट स्टुडेंटडेटेल मानिए कि यहाँ हम स्ट्रिंग के रूप में 11 पास कर रहे हैं अतः डबल कोट्स जोड़ें
हमें एक एरर मिलती है
यह बताता है किThe कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट स्ट्रिंग कमास्ट्रिंग इस अनडिफाइंड
अतः आर्ग्युमेंट का डेटा टाइप उसके पैरामीटर के साथ मिलना चाहिए
अतः कोट्स को हटाएँ और फाइल को सेव करें
अब हमें एरर नहीं दिख रही है
अतः प्रोग्राम को रन करें
आउटपुट में हम तीन कंस्ट्रक्टर्स देखते हैं
पहला एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है
दूसरा एक पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर है
और यह तीसरा दो पैरामीटर्स के साथ कंस्ट्रक्टर है
इस तरह हमने जावा में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाए
कंस्ट्रक्टर क्यों
इंस्टेंस बनाते प्रत्येक समय क्लास में वेरिएबल्स इनिशीलाइज होना चाहिए
सभी वेरिएबल्स इनिशीलाइज करना कठिन हो सकता है
अतः जावा ऑब्जेक्ट्स को इनिशीलाइज करने की अनुमति देता है जब वे बनते हैं
यह कंस्ट्रक्टर के उपयोग के माध्यम से किया जाता है
अतः इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाना
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की कार्यक्षमता
और कंस्ट्रक्टर के उपयोग के लाभ
स्व मूल्यांकन के लिए एक क्लास एम्प्लॉयी बनाएँ
पैरामीटर्स की भिन्न संख्या के साथ कंस्ट्रक्टर बनाएँ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
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं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
धन्यवाद